यहां आप देख सकते हैं दिन का समय है।

एक बहोत बड़ी नदी है। नदी में पांच से साथ बोट दिखाई दे रहे हैं।